-- पर बड़े-बड़े बिजली के खंबे लगे हुए दिखाई दे रहे है नीचे तार लगे हुए--

नर्मदा जी दिखाई दे रहे हैं नर्मदा जी में मचा हुआ पानी दिखाई दे रहा है दूर जाकर मकान दिखाई दे रहे हैं मकान में आगे बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है नर्मदा जी के बाजु में दो पेड़ लगे दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर एक गेट दिखाई दे रहा है गेट में ताला डरा हुआ है लेकिन गेट में ताला नहीं डला हैं।

एक बहोत बड़ा गेट लगा हुआ दिखाई दे रहा है यह अ यह इस गेट --

कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे है ये इस गेट के अंदर --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

--पर पत्थर भी तैर रहे है।

यहाँ पर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग के ए में एक गेट दिखा रहा है उसमें गेट के अंदर एक और गेट --

यहाँ पर एक कॉलेज दिखाई दे रही है यहाँ पर एक खंबा लगा हुआ दिखाई दे रहा कालेज का गेट लगा हुआ दिखाई दे रहा कुछ टीचर कुछ स्टूडेंट खड़े हुए दिखाई दे रहे--

यहा पर बुब्ब्लेस के गेट पे लगे हुऐ दिखाई दे रहे है फूल की माला टगी हुई है खिड़कियां दिखाई दे रही है।

यहाँ पर ऐ फुग्गे लगे हुए दिखाई दे रहे है जलती हुई लाइट दिखाई दे रही है।

पहाड़ से पानी गिरते हुए दिखाई दे रहा है यह पानी ना ओ गाजी मे जाके जाकर गिर रहा है कुछ लोग न-न-ताजी मे नहाते हुए दिखाई दे रहे है।

कुछ आजू बाजू पत्थर लगे हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर एक पा लोहा बिछा हुआ है पे कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे है यहाँ--